सामने बहोत सारी टेबिल कुर्सियां लगी हुई है।

ये चित्र हमे ऐसे रूम का दिखाई दे रहा है रूम में डबल बेड का पलंग बिछा हुआ है।